इस फोटो में एक ग्राउंड नजर आ रहा है जिसके साइड में एक पेड़ नजर आ रहा है इसके पीछे जाली लगी हुई है उसके अंदर हिरण उन नजर आ रही है जो कि कुछ खा रही है उसके पीछे पेड़ पौधे नजर आ रहे है।